इस फोटो में पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर बहोत सारे पेड़ भी दी लगे हुए हैं।

नदी जैसी भी दिख रही है जमीन में पानी भरा हुआ है।

फोटो में एक मार्केट दिख रहा है।

जमीन पर टाइल्स भी लगी हुई है।

और एक हाथी का स्टेचू भी दिख रहा है और भी जानवर हैं।

और बहोत सारे लड़के भी खड़े हुए हैं।

एक आदमी है जो भगवान जी के सामने माथा टेक रहा है।

इस फोटो में एक रोड दिखाई दे रही हैं।

और कुछ लोग रोड पर दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

चेयर के ऊपर बॉटल रखी हुई है।

पार्क के चारों तरफ घने घने पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

जिसके अंदर लोहे की टीन लगी है हुईं हैं छत--

इस फोटो में एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ है।

और एक लड़का बैठा हुआ है जो दिख रहा है।

जिसके बाहर कलरफुल फ्लॉवर्स लगे हुए हैं।

मैदान में बहुत सारी घास लगी हुई है।

तरबूज भी है आम भी है।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

इसके बाहर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

पीछे एक और लड़का खड़ा है उसके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है।

इसके अंदर पर्दे लगे हुए हैं और लाइटें भी लगी है।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है।

इसके अंदर बहुत सारे कपड़े अपनी अपनी जगह रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक पार्क बनी हुई है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक टेंपल दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर अलगनी पर कपड़े टंगे हुए हैं।